जो की इस तरह दर्शाया गया है कि जैसे इसने इ इसने कोई अपराध किया हो।

उसमे अनेक सजावट की गई लाइटों के माध्यम से सजावट की गई है।

चित्र मे एक स्टॉल को दिखाया जा रहा है जो की तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट है।

तथा महिलाओं के पीछे एक पीली सुंदर इमारत है तथा महिलाओं के किनारे कई सीढ़ियां हैं।

तथा चित्र के पीछे एक कैंटीन है जहां पर व्यक्ति खाना खा रहे हैं।